किसी के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं जिसके सामने बहोत सारी गाड़ियां और साइकिल खड़ी दिखाई दे रही हैं।

सामने एक अलमारी टाइप की बनी हुई है जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे जैकेट टगें दिखाई दे रहे हैं।

उसके पीछे ब्लू कलर की पन्नी में कुछ टंगा हुआ है।

और एक पेड़ खड़ा हुआ है जिसके अंदर जालीदार दरवाजा टाइप लगा हुआ है।

ये तस्वीर किसी मंदिर की दिखाई दे रही है जिसमें कृष्ण और राधा खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी गांव की दिखाई दे रही है जहां पे शाम का माहौल दिखाई दे रहा है।

जिसमें से एक बच्चा बैठा हुआ नजर आ रहा है और उसके सामने एक झोपड़ी व्हाइट कलर की बनाई दिखाई दे रही है।

इसके पीछे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

और इसके दीवार के किनारे ब्राउन कलर की कैरेट टाइप की रखी हुई हैं।

और जीना चढ़ा हुआ है जिसके गेट के सामने दो वाइट कलर के पंडाल --

यह तस्वीर किसी शॉप की दिखाई दे रही है जिसके अंदर बोहोत सारा सामान रखा दिखाई दे रहा है।

स्टील के स्टैंड लगे दिखाई दे रहें जिस पे कुछ स्टील की बॉटले रखी हुई है और कुछ प्लास्टिक की बॉटल रखी दिखाई दे रही हैं।

ये तस्वीर किसी गार्डन की दिखाई दे रहे हैं जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे खड़े दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी होटल की दिखाई दे रही है जिसके ऊपर येलो कलर के बहोत सारी लाइटे लगी हुई दिखाई दे रही है।

उसके कोने में भूसा टाइप का लगा दिख रहा है जिसमें एक विंडो भी दिखाई दे रहा है।

इस तरफ बहोत सारी हरियाली खड़ी दिखाई दे रही है और उस तरफ तालाब टाइप का बना दिख रहा है।

सामने एक रास्ता निकला हुआ है जिसपे दो दोपहिया और एक स्कूटी खड़ी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हाइवे की तरह बना कुछ दिख रहा है जिसके नीचे कुछ चर चार पहिया वाहन जाते दिख रहे--

ये ऊपर कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है और जिसके पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।